और यहाँ पर पूजा की थाली रखी है दीपक जल रहा है प्रसाद है पूजा की थाली में पैसे रखे हैं और पंडित जी यहाँ पर पूजा कर रहें हैं।

कलरफुल दिखाई देरे हैं बहौत सुंदर लग रहे हैं सामने पहाड़ो पे छोट-छोटे पौधे लगे हुए हैं।

तो हमने ऊपर की साइड एक --

और नीचे सीढ़ी बनी है सीढ़ी के साइड में कुछ टाइल्स टूटी हैं और कुछ काले कलर का तार दिखाई दे रहा है।

लड़की के साइड में दो लोग खड़े हुए है एक पलंग रखीं हुई है।

चेयर रखी हुई है जिसपे कुछ लोग बैठे हैं सामने एक ऑन्टी है।